सजावट की हुई है।

फोटो में एक दुकान की--

कुछ व्यक्ति एक साइड बैठे और खड़े हुए हैं।

है यहां पर बहुत सारे बच्चे खड़े--

जिसका पानी गंदा हो रहा--